जैसे की आप देख रहे हैं सामने बोहोत बड़ा खेत दिखाई दे रहा है। उस खेत मे हरे-हरे से और पीले-पीले से फूल दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एक कच्ची सड़क बनी हुई है। सड़क के आस-पास मे छोटी-छोटी हरी हरी सी घासे दिखाई दे रही हैं।